ये एक पार्क नज़र आरा है जहा पे काफी सारे लोग इक्खट्टा है।

और जो फाउन्टेन देख रहे है फाउन्टेन --

ये एक शॉप है जहाँ पे अ डोर्मेट सेल सोल्डआउट हो रहे है काफी सारे डोर मेट्स है।

जहा पे टॉय ट्रेन चल रई है।

ये एक ब्यूटीफुल व्यू है जो रोड का व्यू है जहा पर आस पास ग्रीन प्लांट्स --

ये एक रूम नजर आ रहा है जो वाइट कलर का है काफी ब्यूटीफुल है साइड में प्लांटस लगे हुए है।

ये ब्यूटीफुल सा मंदिर नज़र आरा है।

आस पार काफी आस पास काफी सारी प्लांटेशन है फ्रीज है पेड़ है।

अ इट्स इट्स आई थिंक इट्स लाइब्ररी --

ये कॉस्मेटिक की शॉप्स है जहां पे शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट्स नजर आ रहे--

कॉस्मेटिक नज़र आ रहा है यहाँ पे मिरर नज़र आरहा है जहा पे काफी कॉस्मेटिक अवेरबले है।

ये एक मंदिर का व्यू है जहा पर काफी बड़ा सारा बहुत खूबसूरत सा मंदिर नज़र आ रहा है।

और यहा पे प्लानटेसन भी नज़र आ रहा है।

ये एक ओर्केन्स्ता पार्टी है ओर्केन्स्ता शो नज़र आरा है जहा पे एक मैन और एक--

ये पार्क का व्यू है जहाँ पे काफी बड़े बड़े सारे ट्रिस नजर आ रहे है पेड़--

निचे ज़मीन पे घास है चेयर है आस पास चेयर है बैठ ने के लिए।

जो सुपर मायर्केट टाइप थोड़ी बड़ी शॉप है जहॉ कोल्ड ड्रिंक के लिए फ्रिज नजर आ रहा है काफी सारि--

की कोई सा विचिया भवन का व्यू है ये सायद बैंक है।

ग्रीन कलर की घास है यहा पे बेटने के लिए चेयर भी दी हुई है।

यहा पे एक अ टि_वी कैमरा भी लगा हुआ है जिसमे टाइल्स बताते या कुछ लोग खड़े है बटने के लिए जगा दी है बड़े बड़े पिलर्स है।

एक शोप नजर आ रही है जहापे हमें सैनिटाइजर भी दिख रहे है ये सायद एक मेडिकल स्टोर है या केमिकल शोप है --

निचे जी टॉयज भी दिख रहे है बोत सी चीजे दिख रही है।

जीसके निचे कैपिटल बेक्करी कर के एक शॉप है।

अ वाईट कलर और ग्रीन कलर का यहाँ पे गेट है ये कोनसा गार्डन है गार्डन का इंटरेस्ट गेट है ये --

जो की रेड कलर से पेंटेड है यहाँ पर पेरेंट्स और उनके बच्चे दिख रहे है।

ये एक पार्क व्यू है जिसमे बड़ा सारा हाथी है जिसके ऊपर पर स्लाइड्स नज़र आरही है।

ब्लू कलर का उपर आसमान नज़र आ रहा है।

ये ए_एस_सी_ ओ मोटर इसके नाम से है जहाँ पे कावासाकी बाइक्स नजर आ रही है।

अह काफी सारी फोर व्हीलर्स गेट के बाहर एंट्रेंस के बाहर नजर आ रही हैं काफी बड़ा सारा शोरूम है।

एक सो दो टिफिन लिखे हुए है और बड़े सारे पेड़ है यहाँ पे।